ऊपर से टांग रहा है ऊपर से जा रहा है अ पास मे एक लड़का खड़ा है इधर और भी मशीन दिखाई दे रहा है जिम करने का।